और दरवाजा भी टूटा-फूटा लग रहा है जैसे कि बहुत आगे एक पेड़-पौधे भी है बहुत पुराना बहुत बड़ा पेड़ है और इस हवेली में देखने में बहुत अच्छा लग रहा है बहुत पुराना है इसलिए और ईंट वगेरा देखे जा रहा है इस --

इसके बगल में एक जिम सेंटर है वहाँ पे लोहे सामान होता है और लड़का जूता-उता पहन के है जिम में भी जिम करता है इसलिए बॉडी बन गया है यहाँ दिखा रहा है ।

और ऊपर में लाइट लगा हुआ है लाइट की व्यवस्था है और यहाँ पे कुर्सी मे बैठकर अपना काम कर रहे है और आगे एक टूल भी रखा हुआ है और यहाँ एक दुकान है जो दुकान के आगे एक गेट लगा हुआ है गेट भी काफी खूबसूरत है और लोहे का गेट है।